और एक बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही हे। जिसका ब्राउन कलर पोता हुआ है लाईट ब्राउन कलर है और डार्क भी हे कथ्थई टाइप की बाउंट्री हे उसमे --

फोर जी करके इसपे लिखा हुआ हे। शायद मोबाईल की हे ये --

और ब्रिज के यहाँ पे (पर) एक साइड ग्लास दिख रहा है जो कि साइड ग्लास दिख रहा है और आसमान दिख रहा है। आसमान और--

और आजू-बाजू पूरे में पेड़-पौधे है। पूरे में जंगल टाइप का दिख रहा है। बीच में खंभे-खंभा भी लगा है टावर वाला।

तीनो का पहना कर रखा है अंडर गारमेन्ट्स शॉप है।

उसपे कुछ दोनों लगे हुए हैं। एक बाल्टी भी रखी हुई है उनके पास कार खड़ी है और दोनों बैठके रिपेर कर रहे हैं कार को टायर के पास बेठे हैं पीछे वाले --

यहाँ पे लाइब्रेरी टाइप का दिख रही है। कबर्ट्स में बुक रखी हुई हैं। काफी ज्यादा बुक्स रखी हुई हैं। मल्टीकलर्स की बुक्स हैं।

और कबर्ड् जो बना हुआ है वो कथ्थई कलर का बना हुआ है। डार्क कथ्थई कलर का लाइटें वगैरा भी लगी हुई है और--

रो टाइप में बुक्स कबर्ड बने हुए तो उसमें बुक्स रखी हुई --

और जो कि कोट पेहना हुआ है। शूज़ पेहना हुआ है।

टेम्पों में सवारी बेठी हुई हैं। रोड पे चल रहा है टेम्पों का उस पार एक गेट दिख रहा है।

यहाँ पे एक बिल्डिंग है।

जीप टेक्टर वगेरा के बोर्ड लगे हुए हैं।

और भी बोर्ड लगे हुए हैं। काफी बेनर वगेरा लगे हुए हैं। पेड़ लगा हुआ है। यल्लो कलर की बिल्डिंग है।

बीच में बाउन्ड्री भी है जो कि और ग्रीन कलर से उसके पोते हुए है। से।

और पेड भी लगे हुए है। झुला भी लगा हुआ है बीच में कलर का |

यहाँ पे एक गेट लगा हुआ हे। जो की मंजिल--